काउंटर के पीछे दीवार पर एक पत्थर की नकली दीवार का पेपर लगा हुआ है।

तस्वीर में सुंदर सफेद रंग की इमारत दिखाई दे रही है।

ये मैदान है जिसमें कुछ वाहने खड़ी है इमारत में कई कमरे और एक--

यह दृश्य एक रेस्ट्रो की है यहां कुछ लोग बैठे हैं।

छवि में सूर्यास्त का एक दृश्य दिखाई दे रहा है आसमान में सुंदर रंगों के बादल हैं।

एवं एक बड़े सा मैदान भी दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़-पौधे भी हैं मैदान के पीछे एक जंगल है।

और एक फ्रीजर भी रखा हुआ है और काउंटर पे कुछ किताबें रखी हुई है।

एवं थाने के अंदर बहुत सारे गाड़ियां लगी हुई है एवं थाने के बाहर एक व्यक्ति आ रहा है।